यहां एक दरवाजा बना हुआ है जिस पे लिखा है स्टाफ यूज ओनली ।

सीलिंग पर कुछ लाइटे लगी हुई है।

गेट पर काफी अच्छी सजावट की गई है।

रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी पौधों की झाड़ियां बनी हुई हैं।

यहां काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां कुछ झंडे लगे हुए हैं।

एक घर में बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक बेडरूम का दृश्य है।

यहां एक रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है।

रास्ते के किनारे लोहे की बैरिकेटिंग लगी हुई है।

यहां कुछ हरी हरी झाड़ियां उगी हुई हैं।

ऊपर में सांई ऑटो टी_वी_एस लिखा हुआ दिख रहा है।

एक बैनर में ट्रैक्टर और आदमी की तस्वीर बनी हुई है।

यहां काफी ज्यादा पानी ढीला हुआ दिख रहा है।

एक नीले रंग का छतरी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है।

यह एक बास्केटबॉल ग्राउंड की तस्वीर है।

पानी में लहरें उठती हुई नजर आ रही है।

कुछ चट्टानों पर काई जमी हुई है।

कुछ लोग पौधे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ लोग दो दो के पेयर में बैठकर बातें कर रहे हैं।

आस पास कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक आदमी खड़ा है।

यहां कैंडल लैंप जलती हुई नजर आ रही है।

यहां एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जमीन पर कुछ पत्थर दिख रहे हैं।

सीढ़ियों पर एक डोरमैट रखा हुआ है।